और यहां और भी चीजे दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ासा बॉक्स दिखाई दे रहा है।

यह बर्तनों की कंपनी हैं कितने सुंदर सुंदर ग्लास रखें हुए हैं।

मंदिर दिखाई दे रहा है यहां--

और बोरड भी बहोत सुंदर अह लगे हुए हैं।

और पंखा भी छत पे चल रहा है

यहां बहोत सुंदर सुंदर आदमी आसान कर रहे हैं।

बहोत पाई पाई से लोके लगे हुए हैं। यह किसी चीज की मशीन है।

और एक आदमी कुर्सी मेज पे बैठा काम कर रहा--

यहां बहुत सारे बाजार सा दिखाई दे रहा है।